यहां पे तो लग रहा है मैच हो रहा है कोई --

एक ब्लैक कार एक भूरा कलर का लाइटिंग व्हीटिंग अच्छा लगा हुआ इधर एक कितना अच्छा लाइट लगाया है काफी खूबसूरत है--

ये देखिए काफी खूबसूरत लग रहा देखने में काफी अच्छा नजारा है ये-ये कार पार्किंग है यहा पे एक रेड कार खड़ी है।

ये क्या चीज ओ भाईसाब लग रहा है ट्रेन की तरह ओ ये तो ट्रेन है जो की मेला वेला में लगा रहता है।

यह क्या चीज होती यह तो मलतब से यह बोलते है यह ना नहर है नहर तो नहीं है पोखर की तरह लगा है।

बस ये कहना है कोई ब्रांच है।

ये एक नाव रेस का सीन है जो की काफी मतलब लोग मजे कर रहे हैं ये लग रहा है कोई समुंद्र है जो की किसी पहाड़ के साइड में बसा हुआ है।